उसी के साइड में एक दुकान है दुकान के सामने एक बाइक रखी है | आधे में पर्दा लगा हुआ--

यहां पर मुझे बिल्डिंग बनती हुई दिखाई दे रही है अभी बिल्डिंग में काम चल रहा है कुछ पुरानी बिल्डिंग दिखाई दे रही है कुछ मे --

की छत पर भी फ़ैन लगे हुये --